एक पहाड़ दिख रहा है | उस पे कुछ इमारत बनी हुई है | उस पे कुछ पौधे लगे हुए हैं | इनका कलर भी दिख रहा है हर कलर भी दिख रहा है।

यहाँ पे एक चाय कैफ़े दिख रहा है इसका बोर्ड लगा हुआ है उसके पीछे एक व्यक्ति दिख रहा है खड़ा हुआ चाय कैफ़े पर चाय बन चाय का निशान बना हुआ है।

यहाँ पर कुछ नीली लाल और व्हाइट लाइटिंग जल रही हैं। आसपास काफी सारा अँधेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ सभी में लाइट ही लाइट जल रही हैं।

एक बोहत बड़ा म मेहेल दिखाई दे रहा है जिसको ऑरेंज और व्हाइट कलर से पेंट किया गया है| यहाँ पर काफी सारी रेलिंग लगी हुई है।